इसमें बच्चे क्रिकेट खेल रहे है।

सभी अपनी लग अलग हवन--

इसमें काफी व्हाइट जयमाला--

इन सब का कलर अलग--

योगा कर रहे हैं।

फैंसी ड्रेसेज रखी हुई हैं आगे--

फोर स्टोर पड़े हैं।

ए_सी भी लगा हुआ है।

कुछ बच्चों ने बुक --